कंप्यूटर भी धरे हैं और बहुत सुंदर एरिया है टेबल भी रखी है।

एक रेल है या माल गाड़ी है इसमें बहोत सारा समान है इसमें ये कोले से चलती हैं कोला डालने से।

और बहोत सुंदर सफेदी हो रही है पीले रंग की--

यड एक झोपडा है इस झोपड़े मे बहोत सारे आदमी खड़े है।

पेड़ पौधे हैं यहां पे बिजली के बहोत सारे तार हैं।

यहां पे गले के पट्टे मिलते हैं कुत्तों को बांधने वाले।

यहां बहोत सुंदर सुंदर बैठे हैं गले की पट्टी हैं और चैन भी है बांधने वाली।

बहोत बड़ी दुकान है इसमें बहोत सारे बैग धरे हैं स्कूल के और बहोत सारी पेटी भी रखी है।

अ वाश बेसिंग है बड़े बड़े सिंक भी दरे हैं।

मॉल है इसमें बहोत सारी चीज मिले हैं।

यहां प्लास्टिक की लीली बाल्टी रखी हैं ये किसी सामान के साथ फ्री आती हैं।

और बहुत सुंदर तरीके से सफाई से घर रखे हैं इसमें मैगी भी रखी है।

यहां सभी लोग खेल रहे हैं मेला है।